यहँ एक शॉप है जहाँ पर फूलों की माला बाहर दरवाजे पर फूलों की माला लगी हुई है। साइड में एक ड्रेस मटेरियल का शॉप है जहां पे ड्रेस सिलवाते हैं।

यहँ एक बाजार है जिसका व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है और अ कांच के दरवाजे लगे हुए हैं। गेट लगे हुए हैं।

यहँ एक भवन है जिसका कलर व्हाइट कलर है और ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है। ऊपर एक अ खंभा खड़ा ऊपर दो साइड साइड म खंबे खड़े हुए हैं। एक बाहर गाड़ी पार्क की है वाइट कलर की गाड़ी है। और पीछे यह माउंटेन हैं जो बहुत ही सुंदर लग--

यहँ एक कार्यालय है जिसका ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है और बहुत सारी बाहर गाड़ी खड़ी हुई है। कार्यालय का कलर वाइट कलर का है। उसमें दो विंडो लगे हुए हैं जो बहोत ही प्यारे लग रहे हैं।

और अंदर बहुत सारी स्लाइडिंग एक्टिविटीज हु रखी हुई है और पेड़ पौधे लगे हुए काफी अच्छे दिख रहे हैं और बाहर से एक बाजू से रोड गया है और काफी बड़ा बड़ी जगह है यहाँ पर--

स्कूल का कलर है अ व व्हाइट एंड रेड कलर जो बहोत ही प्यारा लग रहा है और बाहर बहुत ही बड़ा ग्राउंड है गार्डन टाइप और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर है।

और टेबल पे एक हेलमेट रखा हुआ है बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है एक आदमी अंदर खड़ा हो करके बुक पलट रहा हैं।